यंहा पर एक हॉल दिखाई दी रहा है हॉल के हॉल मे एक जंगला बोहत सारी जंगले नजर आ रही है यंहा पर बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे है तो कुछ खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बड़े हरे कलर के पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर रेता की रेता रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

खाई दिखाई खड़े दिखाई दे रहे हैंयहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ रखे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर बहुत सारि गोली दवाईया रखी हुई नजर आ रही हैं।

यहाँ पर एक गैरेज टाइप की दिखाई दे रही है एवं एक अंकल बोरी ले जाते हुए दिखाई दे रहे है एवं बाहर पे एक ठेला में एक बोरी कुछ बोरियां रखी हुए नजर आ रही है।

यहाँ पे एक मंच बना हुआ है जिसमें यह लाल कलर का फर्स बिछा हुआ है काफी सारे लोग हैं जिन्होंने व्हाइट कलर का ड्रेस पेहनी हुई है और ऑरेंज जिन ने--

और एक स्टेज बनी हुई है इस स्टेज पर तीन लड़किया डांस करती हुई नजर आ रही है जिनमे तीनो ने अलग-अलग कलर की ड्रेस पहनी हुई है। यहाँ पर--